यहाँ एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे एक लड़का लेटा हुआ है उसके सिर के पास चपल रखी हुई है और एक और इंसान उसके पाँव को पकड़े हुए --

यह एक बैंक की बिल्ड़िंग है बैंक का नाम है फेडरल बैंक यहां पे रेड एन्ड व्हाइट कलर की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है -

उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं और पीछे कुछ सामान रखा हुआ है ये लड़का चस्मा लगाए हुए टीशर्ट पेहने हुए है।

और यहां पे दो लेडिस है और चार पांच जेंट्स है और एक बच्चा भी है जो फोटो निकलवा रहे है पीछे भी बहोत डिजाईन वाली पेंटिंग --